उसके आगे हरे कलर की चटाई भी बिछी हुई हैं उसके ऊपर लाल रंग की कुर्सियां भी रखी हुई है।

बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई गई हैं जिसके आगे प्लास्टिक के काले रंग के ड्रम भी रखे हुए हैं।

और इस आग इसके आगे दो पोल भी लगाए हुए हैं।

और फर्नीचर की पेटियां भी मिलती हैं जिसके अंदर एक स्टूल भी रखी हुई हैं जिसके ऊपर कुछ सामान भी रखा हुआ है।

इन सीढ़ियों का उपयोग एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए किया जाता है।

और इन सीढ़ीओ का रंग लाल कलर हैं।

जिस टेंट का रंग ज्यादातर नीले रंग का है और इस टेंट के अंदर लाइटें भी लगाई गयी है और --

इस तस्वीर में एक पार्क की फोटो दिखाई गई है।

यह तस्वीर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम की हैं।

और इस स्कूल के पास में नीम के पौधे भी है जिसके नीचे तीन लड़कियां भी खड़ी हुई है।